और फायर ब्रिगेड वाला सिलेंडर है जो जेंट्स एक आग बुझा रहा है और रेड कलर की कैप में है।

अ सिस्टर खड़ी हुई है और काफी सारे लड़के खड़े हैं बेंच है कुछ वर्क कर रहे अपना--

और पत्थर है बड़े बड़े और काफी सारे बड़े बड़े पेड़ हैं झाड़ियां है।

एक लोहे का गेट है जो बंद हैं गेट में ताला लग रहा है और गेट के अंदर पेड़ दिख रहें हैं।

कुछ अह बड़े बड़े पत्थर हैं पत्थरों पे घास लग रही है पानी गिर रहा है और--

कुछ हो रहा है अ एक बिल्डिंग में टंकी है जेंट्स और लेडीज खड़े हैं बच्चे भी हैं एक पेड़ है।

एक शॉप है जिस पे लिखा है किंग फैमिली ढाबा।

कुछ आलमारियां हैं शीशे की बनी हुई खाने बने हुए है लाइट जल रही हैं।

एक बिल्डिंग है सामने काफी बड़े-बड़े पेड़ है एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है और येलो कलर की है कुछ कवर मे टंगी हैं।

एक रोड पे व्हाइट कलर कि फोर व्हीलर है।

जो किताब पढ़ रहे हैं और ईसा मसीह हैं।

एक रोड है रोड पे वाइट कलर की लाइन खींच रही है और बड़े बड़े पेड़ हैं बिजली के तार हैं।

और ऑटो है स्कूटी है मोटरसाइकिल है जेन्ट्स एक पुलिस वाला खड़ा है।

एक रोड है रोड पे एक वैन दिखाई दे रही है गाय है एक मोटरसाइकिल है और येलो कलर का बोर्ड है जो उर्दू में लिखा हुआ है।

एक शॉप हैं। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ हैं और एक फैन हैं।

एक शीशे का गेट है लाइट लग रही हैं इस पे और एक बोर्ड पे लिखा है लाइव स्मार्ट टी_वी ।

एक लड़का सामने देखते हुए इसके बाल खड़े हैं एक सामने खड़ा है।

बिजली का बोर्ड है चार्जर है बैठने की सीट है और एक डायरी रखी हुई है काउंटर पे।

एक मिट्टी का ढेर दिख रहा है और एक बॉल है दो गधे है।

एक स्टेज है स्टेज पे एक जेंट्स लैपटॉप लिए बैठा है और एक खड़ा है कुर्सियां हैं।

और काफी सारी स्कूटी है जेंट्स लेडिज खड़ी है एक--

पेड़ हैं पेड़ के उस पार छोटे छोटे घर हैं घास है।

और भी कुछ अपने खाने में खाती नजर आई है और पीछे पेड़ है काफी सारे--

एक जेंट्स लेडिस को चाबी देते हुए दिख रहा है।